साइड में नीम के पेड़ के नीचे कुछ साईकिलें खड़ी हुई हैं।

रेलवे के ऊपर एक ब्रिज बना देख पा रही हूं।

पीछे मैं एक टेबल को भी देख सकती हूं।

यहां मैं बहोत सारे बॉक्सेस को रखे हुए देख पा रही हूं।

जिनमें मुझे कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।